इस फोटो में जिम की कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं जिनका रंग ए पीला दिखाई दे रहा है दीवालों पर गुलाबी और हरा रंग किया हुआ है फर्श का रंग भूरा नजर आ रहा है।

इस फोटो मे एक स्टोर दिखाई दे रहा है जिस के उपर मा सरस्वती जनरल स्टोर का साइन बोर्ड और एक मोटे आदमी का फोटो लगा हुआ है सामने कटिया वाली मशीन दिख रही है

इस फोटो में जिम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्सरसाइज मशीने --

रखे हुए हैं सफेद हरे पर्पल लाल पीले कई प्रकार के फूल हैं| इसमें काँच की खिड़की और अंदर बल्ब नज़र आ रही हैं| बिल्डिंग पीली --

एक फोटो मे रोड है का साइड दिखाई दे रहा है जिस पर हल्के पत्थर कलर के छोटे-छोटे टाइल्स लगे हुए है एक --

इस फोटो मे योगा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जिसमे योगासन के एक स्टैचू बना हुआ है।